इतना सुंदर से है इसको देखने में लग रहा है दो-दो लाइन लगा हुआ है इधर तक।

यहां तो घर में ही बहुत अच्छा सा गोदरेज लगा हुआ है यहां बोतल उतल भी रखे हैं गोदरेज के ऊपर।

इसके अंदर में बहोत अच्छा-अच्छा सा कुर्सी --

हाॅं देखिए भाई स्कूल का बेंच कितना बोहोत सारा लगा हुआ है सजा के|